इस दृश्य में मुझे रेखो में अनेक प्रकार के वस्तुए रखी हुई दिखाई दे रही है।

जैसे अनेक प्रकार के साबुन शैंपू तथा खाने के बिस्कुट एवं कोल्डिंग भी रखे हुए--

जिम कर रहा है तथा वीडियो के बल्ब रोशनी दे रहे हैं।

यह एक जिम का दृश्य--

जिम करने की अनेक प्रकार के वस्तुएं मौजूद दिखाई दे रही हैं।

एवं बहुत सारे पेड़ एवं अनेक प्रकार की खूबसूरत पौधे लगे हुए।

इस दृश्य में मुझे एक पल्स हॉस्पिटल का बिल्डिंग नजर आ रहा--

एवं एक बच्चा सर में टोपी पहना हुआ है।

एवं काफी सारे ट्रे एवं फ्रिज में अनेक प्रकार की खाने की वस्तु दिखाई दे रही है।

क्या एक एक दुकान का दृश्य है यहां कई सारे अनेक प्रकार के केक--

किंडरजॉय तथा अनेक प्रकार की खाने की वस्तुएं रखी हुई--

रैकों अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई है।

तथा कोई छोटा आलू है तो कोई बड़ा आलू है।

एवं बकरियों का कलर सफेद तथा करते है।

एवं विद्युत के बल्ब रोशनी दे रहे हैं।

कछुए का बाथरूम भी मैदान में दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य मे मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है।

एवं एक लड़की के हाथ में फोन है।

इस दृश्य मे मुझे एक डोरंडा थाना रांची दिखाई दे रहा--

टायर की दुकान के बाहर सीएट टायर का बोर्ड लगा हुआ है एवंम अगल बगल बहुत सारी दुकाने मौजूद दिख रही है।

कृष्ण भगवान अपने हाथ में बांसुरी बजा रहे--

एवं कई सारे छोटे एवं बड़े पत्थर नजर आ रहे है।

यहां अगल बगल बहुत सारे पेड़ एवं पौध मौजूद है एवं खेलने के एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

एयर एवं गमलों में पौधे भी मौजूद है एवं विद्युत के बल्फ रोशनी दे रहे हैं।

इमरजेंसी एवं ओ_पी_डी भी लिखा हुआ है तथा बहुत सारे पेड़ पौधे भी मौजूद है।

हरे भरे घास एवं मैदान भी दिखाई दे रहा है।

लकड़ी के दरवाजे में शीशा के ऊपर स्लाइड टू ओपन स्लाइड टू ओपन लिखा हुआ है।

एवं ए_सी भी लगा हुआ है तथा बड़े बड़े बर्फ से रोशनी आ रही है।